येलो कलर की शटल दिख रही है ब्लैक कलर की बल्ब दिख रहे हैं हमें यहां पर बाइक दिख रही --

लाइटिंग दिख रही है मूर्ति दिख रही है हमें यहाँ पे लोग दिख रहे है फ्लावर्स दिख रहे है पिले कलर के येलो कलर के ग्रीन कलर के रेड कलर का कारपेट दिख रहा है।

पर्दा दिखाई दे रहा है येल्लो कलर का है हमें यहाँ पर सीट्स दिखाई दे रही है रेड कलर की टेबल दिखाई दे रही है।

येलो कलर का पोस्टर दिख रहा है बहुत सारी ट्रॉफी दिख रही हैं हमें यहाँ पर मैडल दिख रहे हैं जो कि रेड कलर के हैं डेक्स दिख रही --